नीचे भी लाल पीला कलर दिख रहा है। अ कुछ आदमी बैठे हुए हैं वो खा खाना खा रहे हैं। कुछ खड़े हुए हैं। एक आदमी बनान पहने बैठा है उसकी धारी लाल है उसमें।